यह एक शॉप है जिसके अंदर बहुत सारे समान रखे हुए है तथा अलमारियाँ बनी हुई है जहां अलग-अलग खंचों मे अलग-अलग सामान --

यह एक टेबल है जिसके ऊपर एक कंकाल रखा हुआ है तथा को ऑक्सीजन मास्क पहनाया हुआ है।

किनारे से रोड निकला हुआ है रोड के ऊपर से एक परी जा रही है जिसके कंधों पे है अगल-बगल पेड़-पौधे लगे हुए है तथा पत्थर रखे हुए है तेज धूप निकली हुई --

पक्षी है जिनके बीच में एक चूजा चुजे का कलर ब्लैक की तरह पक्षियों का कलर व्हाइट --

यहाँ एक फंक्शन का आयोजन किया गया है यहाँ बहुत सारे लाइटे लगी हुई है पर्दे लगे हुए हैं वह कुछ उनके दीवारों पे लगे --

यह एक मस्जिद है यह मस्जिद के कोनो पर एक टॉवर लगा है यहां टॉवर के ऊपर अर्द्ध चांद का साइन बना है।

यह एक प्रशासनिक भवन है जहां बाहर की तरफ छज्जे पर प्रशासनिक भवन लिखा है तथा ग्राउन्ड मे जे.सी.बी. खड़ी है।

यह एक स्विमिंग पूल है जहां स्विमिंग पूल के अंदर बहुत सारी सर्कल मे चूड़िया बनी हुई है।